यहाँ पर एक प्लेट में काफी सारी फिश रखीं--

और बाहर दो बाइक भी खड़ी हुई है।

ऊपर लाइट भी दिखाई दे रही है।

सामने यहां पर एक अंकल और एक आंटी --

दो जने काम कर रहे हैं।

पहाड़ी इलाका दिखाई दे रहा है यहाँ पर काफी सारे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

और एक लड़के ने हाथ में एक कॉफी का रेड कलर का--